बुनियादी अरिथ्मेटिक ऑपरेटर्स पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
मैं पहले प्लस+ माइनस मल्टीप्लाय* और डिवाइड/ ऑपरेशन्स के बारे में बताऊँगा
यह ऐसे लिखे जाते हैं plus minus multiply एक asterisk के रूप में और divide फॉर्वर्ड स्लैश के रूप में
तो मेरे पास दो वेरिएबल्स होंगे
मैं एक num1 नामित वेरिएबल बनाऊँगा और मैं उसे 10 वेल्यू देकर सेव करूँगा और num2 इक्वल टू 2
अतः ये दोनों पूर्णांक संख्याएँ बिना दशमलव की हैं
अच्छा अब मान लीजिये कि मैं num1 और num2 को एक साथ जोड़ना चाहता हूँ
तो मैं num1 num2 के जोड़ का उत्तर एको करता हूँ
चलिए इसको जाँचें
तो यह 12 है 10 और 2 num1 और num2 जब 10 और 2 को जोड़ते हैं तो उत्तर 12 होता है
अच्छा तो चलिए अब माइनस घटाव को देखें हम यहाँ केवल माइनस चिह्न को बदल देते हैं
रिफ्रेश करें और यह 8 होगा
अच्छा तो चलिए अब मल्टीप्लिकेशन गुणा को देखें 10 गुणा 2 20 होता है और हमें 20 मिल गया
अगला 10 भाग 2 10 का आधा होता है जो कि 5 है
अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके अंत में कुछ जोड़ दें
तो चलिए इसको num2 से भाग देते हैं
अब मुझे लगता है कि यह ऑपरेशन काम करेगा कि यह num1 और num2 को जोड़ेगा तो वह 10 और 2 को जोड़ता है जो हमें 12 देगा और फ़िर 2 से 12 विभाजित होगा
अतः 2 से 12 विभाजित 6 देना चाहिए
लेकिन वास्तव में यह क्या करेगा यह num2 को लेगा और इसको num2 से भाग देगा जो 1 देगा और num1 को इसमें जोड़ देगा
तो इसका मतलब है कि हमें 6 के स्थान पर 11 मिलेगा
अब इसका कारण यह है कि डिविजन भाग ऑपरेटर हमेशा एडीशन ऑपरेटर से पहले काम करता है गुणा के साथ भी वही होता है
अब इसको हल करने के लिए हमें कोष्ठक लगाने चाहिए
कोष्ठक यह बताते हैं कि हम इस ऑपरेशन को पहले करेंगे जो कुछ भी इसके अन्दर है उसे पहले करेंगे और फ़िर भाग देंगे यह एक गुणांक या वेरिएबल कुछ भी हो सकता है
तो यहाँ पर यह क्या करेगा कि num1 num2 को जोड़ेगा जो कि 10 धन 2 जो कि हमें 12 देगा 12 भाग 2 जो कि हमें 6 देगा
चलिए उसे रिफ्रेश करें और हम देख सकते हैं कि यह चला है
तो ये बुनियादी अरिथ्मेटिक ऑपरेटर्स हैं जो उपयोग करने के लिए सरल हैं
यदि आपको कोई समस्या आए तो अपने हिसाब को हमेशा कैलकुलेटर से जाँच लें और निश्चित कर लें कि वे काम कर रहे हैं
हम शीघ्र ही इसी प्रकार के कुछ और देखेंगे
हम इन्क्रीमेंट वृद्धिअरिथ्मेटिक ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे जो कि 1 से वृद्धि करता है लेकिन मैं उसका प्रयोग कुछ देर बाद करूँगा
अतः इनका अभ्यास कीजिये और निश्चित कर लीजिये कि आप उन्हें अच्छे से सीख लें
आई आई टी बाम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद